यहाँ पर एक डॉगी भी बैठा हुआ है और यहां पर एक बोल भी रखी हुई हे।

साथ में ही इसके पास एक गोदरेज भी रखी हुई है और इसके पास एक कुर्सी भी रखी हुई है।

साथ ही यहां पर काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है जो कि हाथों में माला लिए हुए हैं।

जिस पर कुछ महिला व बच्चे खड़े हुए हैं साथ ही यहां पर--

यह एक गार्डन है और इसके अंदर लोहे के कुछ पिलर बनाए गए हैं।

और यहां पर एक लकड़ियों का गुच्छा भी रखा हुआ है।

और यहां पर कुछ झंडे भी लगे हुए है साथ ही यहां पर कुछ बैनर भी लगाए गए हैं।

यह एक जिम सेंटर है और यहां पर काफी सारी जिम की मशीने रखी हुई है।

और यहां पर पीछे की ओर काफी सारी गाइडें भी खड़ी हुई है।

जो कि टीचर डे के लिए बनाई गई है साथ ही यहां पर काफी सारे टॉय भी पड़े हुए हैं।

और यहां पर छत पर काफी सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है और यहां पर काफी सारे बेड बिछे हुए हैं।

जो कि चॉकलेटी कलर की है पीछे की ओर दीवारों पर कुछ डिजाइन भी बनाया गया है।

यह एक रूम है और रूम के अंदर कुछ पर्दे लगाए गए हैं जो की ऑरेंज वह हरे कलर के हैं।

यह एक हाउस है और यहां पर एक लोहे का गेट भी लगाया गया है।

यह पत्थरों के अंदर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

साथ ही यहां पर काफी सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं।